जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक गें जिम का --

पेंटिंग के काम को यहाँ पर एक भैया कर रहे हैं और कार कों --

आ रही है और यहाँ पे फेंसिंग हुई है।

अ मैरिज हॉल है और यहाँ पे खूब सारा यहाँ पे टेंट लगा हुआ है।

जो अपने को गेट दिख रहा है वहाँ पे --

बैंक है और बैंक के बाहर कई लोगों की भीड़ यहां पे लगी हुई है।

कई सारे कांच यहाँ पर लगे हुए हैं और कांच लगे हुए हैं और यहाँ पर --

अ दिव्यस्थान नज़र आ रहा है।

खड़े हुए नज़र आ रहे हें ।